मछली को बेचती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अनेक प्रकार की मछलियां मिलती है।

यह सारी मछलियाॅं कुछ छोटी कुछ बड़ी हैं। यहाँ पर लोग खरीदने के लिए आते रहते हैं। ये रात के सीन है।

सऊदी के अंदर की पार्टी का है।

सब्जी की मंडी का है।

जहाँ पर एक होटल है होटल के अंदर खाना बनाती हुई सब्जी काटती हुई महिला नज़र आ रहीं है।

अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे फूले फूल रखे गये हैं।

ये दुकान इतनी भरी हुई है इस के अंदर का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ अँधेरा हो रहा भीतर।